यहां पर दीवार पे बहोत छोटे बच्चे बने दिखाई दे रहे हैं।

बैग कुछ समान दिखाई दे रहा है।

और यहां पर अ एक आदमी सफेद रंग का झोला टांगें दिखाई दे रहा है।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

पीछे दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

वे यह घर टुटा फुटा नजर आ रहा है।

पीछे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर जिम की नजर आ रही है यहां पर हरे रंग का मैट दिखाई दे रहा है।

एक और व्यक्ति बैग टांगे दिखाई दे रहा है।

दुकान की नजर आ रही है यहां पर वॉश बेसिन नजर आ रहा है व यहां बहुत सारे शीशे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बिजली के खंभे दिखाई दे रहे है वे ईंटों के चट्टे भी नजर आ रहे है।

की है यहां पर एक क्रेन दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक अ अं मशीनों की नजर आ रही है जहां पर एक आदमी काम कर रहा है।

नीचे बहुत सारा कचरा पड़ा दिखाई दे रहा है मशीने बहुत बड़ी हैं।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

यह तस्वीर में चार कैमरे दिखाई दे रहे हैं।

पर साथ में एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

वे यहां एक तकिया भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग ब्राउन है।

कारपेंटर्स अपना काम कर रहे हैं।

वह फोन भी चला रहा है।

और ऊपर घने काले बादल भी--